पैसे जमा पैसे निकलवाने के लिए आये हुए है इस ए_टी_एम् मशीन में कुछ--

नगदी भीतर पैसा निकलवाते हुए दिखाई दे रहे है।

यह एक शादी का मंडप है जहाँ पर --

इसके ऊपर लड़ी फूल लाइट जचती हुई नजर आ रही है।

के साथ फवारे के पास बैठा हुआ है पीछे --

ठोल वाला मस्त अ दिखाई दे रहा है उसके पास में एक घाँस फूस लगी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक नदी के किनारे पर--

ट्रक लोढढा वगैरा खड़े हुए है।

पेच वगैरा रखे हुए नजर आ रहे है की --

दो कार खड़ी हुई नज़र आ रही है रोड बना रखा है पीछे बिलडिंग के पास में --

जहाँ जहाँ जहाज है यह एक जहाज के पीछे--

दुकान है जहाँ पर एक व्यक्ति चाय बेचता है और ब्रेड --

मशीन का काम करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक मोटर लगा रखी है।

पहाड़ी क्षेत्र पर हमें पहाड़ नज़र आ रहा है पहाड़ के ऊपर--

क्रोमआयल नेपकिन और फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रही है दूर - दूर की बड़ी - बड़ी पेड़ लगाई लग रहे है।

निचे पार्किंग है पार्किंग के पास में दुकाने लगी हुई नजर आ रही है।

तीन व्यक्ति है जो जो खाना परोसते हुए दिखाई दे रहे है।

यह रंग-बिरंगे गुब्बारे लगा रखे है।

उसके नीचे बड़ा सा पत्थर के ऊपर ही ये बड़ा पत्थर रखा हुआ दिखाई दे रहा है पास में --

उर्दू में लिखा हुआ है यह एक स्कूल के अन्दर का दृश्य हैं ।

जहाँ पर सकूल का उद्घाटन किया जा रहा है यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी खड़ी हुई है बिलडिंग के गेट के ऊपर --